बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं जमीन पे पीली मिट्टी है कुछ साइड कुछ साइड मे घाँस भी दिखाई रही है।

एक गाड़ी खड़ी हुई हैं और एक औरत थैली मे सामान लिए जा रही है।